इसी मुझमे चेक कर पा रहे हैंऔर एक व्हाइट कलर की गाड़ी हैं उसके शीट भी व्हाइट टावेल के साथ कवर की गई हैंउस गाड़ी मे कोई काम कर रहा हैं उसने

सामने एक ऑरेंज कलर का क्रॉस बना हैं एक ग्रीन कलर का पेन्ट हैं उसके सामने काफी सारे आदमी खड़े हुए हैं और दो छोटी बच्ची कुछ बच्चियाँ भी खड़ी हुई हैं और कुछ औरते भी खड़ी हुई हैं।

पीछे कुछ जगह ब्लैक कलर का नीचे मैट लगे हुए है उसकी वैस्ट पे एक मोतियों वाली माला है सर पे गजरा है कानो में बालियां है ।